यहाँ हमें किसी इमारत के अंदर का --

कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं |

और कुछ छोटी-सी टी.वी. लगी --

गेट में भी धारियाँ-धारियाँ बनाई गई हैं |

रोड के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जिसमें ट्रेन की पटरियां बनी हुई है।

सिरमेंटेड बाउंड्री बनी हुई है।

इसने लाल कलर का इयरफोन पहना हुआ है।

यहां हमें बड़ा-सा होटल दिख रहा है।